सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए--

इस चित्र में एक बडा हॉस्पिटल दिख रहा है।

कुछ ज्वेलरी रखी हुई--

साड़ी की दुकान दिख रही है।

इस चित्र में एक स्कूल का--

कुर्सी टेबल लगी हुई है।

इस चित्र में एस_बी_आई लिखा दिख रहा है।

एक अ रेस्टोरेंट दिख रहा है।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

इस चित्र में महाऋषि भवन--

जीने दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिख रहा है।

दिख रहा है।

इस चित्र में एक--

इस चित्र में फेडरल बैंक --

इस चित्र में एक स्टेज दिख रहा है।

ए_टी_एम दिख रहा है बैंक नेम लिखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ी फैक्ट्री दिख रही है।

सुंदर पेड़ लगे हुए--

इस चित्र में एक बड़ा--

बहुत सारी नाव दिख रही--

नीचे भी मशीन लगी--

इस चित्र में एक घर बनता दिख रहा हे।